इसको गरीब से गरीब कस्टमर भी पर्चेस कर सकता है।

जो कि सभी लोग आसानी से पर्चेस कर सकते हैं ।

तथा लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने काम भी इसमें किया जाता है।

जिसमे वहाँ के औरते नदी तथा तालाबों में --

जो पैसेंजर होते हैं वो बुकिंग माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जातें है --

अ इसमें इसमें पार्किंग भी बेहद अच्छी सुविधा उपलब्ध है।

और कौपी के साथ में यहाँ चाय भी उपलब्ध है |

ये भवन का निर्माण हो रहा है।

जिसका उपयोग लोग पूजा पाठ के लिए करते हैं |

डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है |